कम से कम बीस लड़कियां जो योगा कर रही हैं।

और ये नीले मैट के ऊपर और ऑरेंज --

यह लाइब्रेरी है जिसके अंदर बच्चे पढ़ते हैं और यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं इन्होंने स्काई कलर की ड्रेस पहनी है में व्हाइट है।

और यहाँ पे बहोत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं सीच ऑनर कि नर्सिंग इंस्ट्यूम स्टूडियो पड़े हैं और यहाँ पे बाहोत सारे डेक्स हैं चेयर्स भी --

मूर्ति है वह हाथ जोड़कर खड़ी है उन्होंने व्हाइट कपड़े पेहने हुएं हैं और स्काई ब्लू कलर का स्टार है उसके--

जिसके हर बार लोग चक्कर भी लगते हैं यहां बहुत सारे झूले लगे हैं और एक यहां बेंच है जिसके ऊपर तीनों जने बैठे हैं और झूले पर --

लड़के ने रंग बिरंगे कपड़े पहने है उनके हाथों में बहुत--

ग्रीन कलर के पोस्टर लगे हैं रेड कलर का टे टेम्पलेट्स लगे हैं डी_जे पड़े है ब्लैक के डी_जे हैं बड़े हैं और स्टेयर्स भी लगे है नीचे।

और यहां पर बहोत सारे चेयर्स स्टूल्स और सोने के लिए मंचे भी बनी है और यहां बाइक स्कूटी एक्टिवा कार भी खड़ी हैं।

यह एक मोबाइल की दुकान है यहां पर बहुत सारे--

पर सिल्वर कलर की टाइल्स लगी है और उसके अंदर तीन खम्भे भी है यह कुल साइडो में--

चादर लगी हुई है चादर के ऊपर बहुत ही तरीके के आर्ट्स ल लगी हुई हैं जैसे स्क्वेयर गोल टॉयंगल मैड एंगल ।

जो बर्गर की तरह दिख रही है उसके अंदर वाइट सॉस चिल्ली सास --